यहाँ पर मुझे बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं बहुत सारे मकान दिखाई दिए-- यहाँ पर टिन शेड दिखाइ दे रहा है यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी--

आदमी है उसने कोट भी पहन हुआ है बैग भी टाँगा हुआ है पोस्टर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहां पे सफ़ेद सफ़ेद बोहोत सारे कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक घाट बना हुआ दिखा दे रहा हैं घाट पर मंदिर बने हुए दिखाई दे रहे हैं घाट पर औ सॉरी सीढियाँ लगी हुई दिखाई दिए यहाँ पर तालाब भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर--

मालाएं रखी हुई दिखाई दे रही हैं यहां पर मुझे मोगरे दिखाई दे रहे हैं यहां पर सफ़ेद फूल दिखाई दे हैयहां पर पीले फूल दिखाई दे रहे है यहां पर गुलाब के फूल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर माला रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर पंख लगे दिखाई दे रहे है यहाँ पर फोन के कवर दिखाई दे रहे यहाँ पर फोन भी रखे दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुर्सी रखी दिखाई दे रही है यहाँ पे आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

पा टोकरी में रखीं हुई दिखाई दे उसपे एक अख़बार लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहोत सारे अंगूर दिखाई दे रहे है मुझे काले-काले अंगूर दिखाई दे रहे है यहाँ पर मुझे--

यहाँ पर मुझे गार्डन दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे सड़क दिखाई दे रही है यहाँ पर आस पास लगे हुए पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है पतली सड़क दिखाई दे रही है।

पोस्टर पे लगे हुए डिजाइने भी दिख रही है यहां पे मुझे बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनी हुई यहाँ पर पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे है।